और ये कुछ रस्सीयों से बांधा हुआ है और यहां पीछे में भी कुछ नाव लगे हुए हैं।

और यहां नीचे में रेस्टोरेंट और बैंक्विट लिखा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट का तस्वीर है और इस छत पर बहोत सारे झालर लगे हुए हैं।

ये रेलिंग पास कुछ लोग खड़े है और यहां पर एक गेट है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर एक बोर्ड भी है जो पीछे से दिखाई दे रहा है यहां पर एक मगरमच्छ का डस्टबीन भी बनाया हुआ है।

यहां पर घास का जमीन हैं और यहां पर किनारे में आने जाने का रास्ता भी बना हुआ है और यह एक एनिमेशन फोटो है।

और उसके नीचे कुछ चेयर लगा हुआ है जिस पर एक स्पीकर दिखाई दे रहा है और ऊपर में दो पंखा लगा हुआ है और यहां पर कुछ लाइट्स जल रहा है।

यहां पर एक रोड है रोड के किनारे में एक एरो वाला पोल लगा हुआ है।

और इसके नीचे में कुछ लाइट्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है इसके बगल में काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

जो रेड कर के सोफे पर बैठे हुए हैं एक के शर्ट पे डिजाइन बना हुआ है एक का शर्ट प्लेन है।

किनारे वाले बिल्डिंग के लिए कुछ खिड़की खिले खुले हुए हैं यहां पर कुछ साइकिल भी लगे हुए हैं।

काउंटर के ऊपर में एक तराजू रखा हुआ है उसके बगल में कुछ पेपर रखा हुआ है।

इसके अगल बगल में काफी सारे पेड़ पौधे हैं एक व्यक्ति साईकल से जा रहा है उसने मास्क पहना हुआ है।

यहां पर इस व्यक्ति ने रेड कलर का कोट पहना हुआ है इसके पीछे एक चेयर है।

इस तस्वीर में सामने में एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ के पीछे घर है जो रेड कलर का है।

और यहां पर सारे लोगों का एक पांव आधा आसमान में है।

और पीछे में कुछ लोग हैं दोनों पांव नीचे है और ईनके पीछे एक और व्यक्ति है जिसने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

यह एक दुकान के पिक्चर है यहां पर बहुत सारी लाइट्स लगे हुए हैं और यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मर्क--

इस तस्वीर में सामने एक दीवार है जीसपे ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है यहां पर एक पीला कलर का बैरियर लगा हुआ है।

यह पिक्चर एक दुकान का है यहां सामने में कोई बहुत सारे बेल्ट टंगे हुए हैं।